और यह सब देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है इस मंदिर के चारो ओर लोहे के गेट से घेरा गया है।

और इस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं यह घर दिखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है।

यह स्विमिंग पूल का पानी बहुत ही साफ है और यहाँ बहुत सारे लोग तैरने के लिए आते रहते हैं ।

यह पार्क बहुत ही बड़ा है और यह देखने में बहुत ही सुन्दर है।

और यहाँ बहुत सारे लोग भी आये हैं और यहाँ एक घर है इस घर में बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।